यहाँ कचरा दिख रहा है उधर पानी-पानी दिख रहा है।

नया है बहुत-बहुत लाइट कितना सुन्दर दिख रहा है।

बहुत ओल्ड मोडल का है वहां पे एक पेंड़ है।

यहाँ पे कितना सारा गाड़ी लगा है इधर --

देखने में बहुत सुन्दर यहाँ का मौसम भी बहुत सुन्दर देख --

सब चर रही है बहुत सुन्दर देखने में बहुत सुन्दर बहुत सूंदर लग रहा है बहुत सुन्दर।

तेल साबुन हर एक चीज मिलता है ब्रस कोलगेट ।

दो लगा हुआ है | दोनों सजाया गया है |

यहाँ यहाँ पे हौंडा कंपनी का शोरूम है कितना सुंदर।

यहाँ पर एक आदमी खड़े है बाइक ले करके और उधर भी --

कितना अच्छा इधर भी कच्चा रोड है और पिच है कितना सुन्दर।